और मस्त लाइट व आसमान दिख रहा है ऊपर बहोत भयंकर दिख रहा है।

और उसमे लाल का बना हुआ है कलर --

खड़े हुए हैरुमाल बांधे खड़े हुए है यहाँ आमने -सामने मकान दिख रहा है ए पीले कलर का ऊपर दिख रहे है साइड मे मकान मंदिर दिख रहा है बहोत लोग खड़े हुए है।